यहां बहोत सारे आदमी है और औरत है यहां पे--

है कोई मैरिज हॉल है और यहां पर बोहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

बहोत सारी लड़कियाँ और लड़के हैं यहां पर यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति हैं।

यहां पर एक बाइक खड़ी हुई है यहां पर एक दुकान है।

यहां पर एक रस्सी दिखाई दे रही ह--

यह एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर दो भैंस दिखाई दे रही हैं।

एक लेडिस भी नजर आ रही है और एक व्यक्ति और एक साइकल और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

जीम का कुछ सामान पड़ा हुआ है इसने वाइट जूते पहरे हुए हैं।

और बहोत सारी कुर्सियां और बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बोर्ड है और यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर एक जंगला भी लगा हुआ है।

कैमरे लगे हुए हैं यहां पर तार हैं।

यहां पर एक गेट है एक आदमी है यहां पर एक चटकनी है।